नदी बांध टाइप से दिखत हे ओकर उपरे पहाड़ जैसे तमता पहाड़ जैसे दिखत हे एहर--

मस्त दिखत हे मस्जिद हरा हरा बोहोत सुन्दर नजारा है।

ए जसपुर कर मैदान है जो बहुंत खूबसूरत दिखत है इहाँ लइका मन खेल खेल खेलथैं दुइ चार झन आदमी दिखत हे एमे ।

खेल खेलथैं दिखत नहीं है बाकि दूर से दिखत है त पेहचान नहीं आत है खेलत है की का करत है मैदान म--

सीधा हाथे गेट बंद हे साइड साइड में पहाड़ टाइप से दिखत हे ए का ह--